और खिड़की भी लगी है | यहाँ सामने दुआ भी रखी हुई है जो काफ़ी अच्छी है और वाइट कलर की मस्जिद भी पुती हुई है जानेमाज़ भी बिछी हुई है मिली हुई कूलर भी रखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा है।